बहुत सारे आदमी खड़े हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे है बाहर है ब्लैक कलर के टायर पड़े हैं।

इधर सामने को बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है लोग बैठे हैं एक आदमी खड़ा है।

पीछे खिड़कियां लगी हुई है दो ऊपर गुंबद है।

सामने टूटी सी स्टूल पड़ी है स्टूल के ऊपर कैंपर पड़ा है पानी का सामने टी_वी लगी हुई है बेंच के ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा है डिब्बे पड़े हैं।

बहोत सारे फर्नीचर पड़े हैं सामने दीवार के उधर एक ए_सी लगी हुई है सफेद कलर की नीचे चौक में सोफा पड़ा है।

यहां पर ब्लैक कलर के पंखे लगे हुए हैं पंखे ऑन हैं दीवार घड़ी लगी हुई है गोल साइज की --

और जहां पर भी जाओ बस अलग अलग कपड़े पड़े है।

सामने दो पंखे लगे हुए। ऊपर भी खिड़कियां बनी हुई जाली लगी हुई है।

दून के गड्ढे हुए है और पेड़ लगे हुए हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है बाहर की साइड दो नाव पड़ी है।

सामने दीवार के ऊपर खिड़कियां लगी हुई है दरवाजे लगे हुए है पर्दे किए हुए हैं ऊपर ए_सी लगी हुई है ट्यूब लाइट जल रही है।

यहां पर सामने करीमनगर डेयरी डिपार्टमेंट डेयरी पार्लर बना हुआ है।

पीछे से सड़क निकल रही है सड़क के ओ-जो साइड बहोत बड़े-बड़े पेड़ उगे हुए है इस दुकान के आगे कुछ मोटरसाइकिल कुछ स्कूटी खड़ी है।

यहां पर एक जिम जंक्शन लिखा हुआ है येलो कलर का और ऊपर लाइटें लगी हुई है पंखे लगे हुए हैं।

अलग-अलग डिब्बे बने हुए हैं पीछे दीवार लगी हुई है दीवार के बाहर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं इस सर्कल के बीच में एक बहुत ही बड़ा पेड़ है।

पत्थरों से कुछ बनाए हुए है अलग अलग कल--

बाहर गर्मी है बहुत सारी सफेद कलर की कुर्सियां पड़ी हैं कुर्सियों के ऊपर बहुत सारे आदमी बैठे हैं।

उधर बहोत सारे पैकेट पड़े है माउस के कुछ एयरफोन के कुछ फोन वाले के कवर है।

एक पंखा है और गुब्बारे लगे हुए हैं नीचे बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है जो बहुत लंबा है।

छोटा सा पत्थर पड़ा है बीच में--